इस पिक्चर में हमें देखने को मिल रहा है एक खाली सा मैदान और मैदान पूरा ब्राउन ब्राउन है उसमें ग्रीन घासें भी उगी हुई हैं।

और प्रो आइटम्स को जोकी अ थोड़े चमक रहे है काफी ज्यादा और नीचे की तरफ भी कुछ आइटम रखे हुए ही है फर्श पे अ जो की थोड़े पुराने-पुराने से लग रहे है कुछ और टेबल लोहे के जैसे कई हमको मिलने को देखने को मिल रहे है।

हमे एक लो नेट जाल लोहैस की जा तार का बना हुआ जाल एक देखने को मिल रहा है जिसके पीछे हमे एक जिन्दा शेर देखने को मिल रहा है जो की देख रहा है दूसरी तरफ--

हम देख पा रहे है की पानी अ झील में पानी भरा हुआ है और वहा पर कुछ आदमी भी है जो की पानी के अंदर डूब रहे है एक बच्चा है जो की पानी की थोडा सा ऊपर है उसकी टांगे पानी आ थोडी सी है।

और बाकि उसने निक्कर पहना हुआ है बनियान पहनी हुई है और देख रहा है दूसरी तरफ और हमें एक बडा सा पत्थर आ नाव जैसा कुछ देखने को मिल रहा है और पीछे की तरफ सूरज और आसमान।

कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक जिम के अंदर का सीन दिखाया गया है जहाँ पर कुछ जिम के इक्व इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं।